सामने दिख रहा तस्वीर एक लड़के की है एक अ अम योगासन कक्ष की है जिस योगासन कक्ष में लोग योगा करने के लिए आते हैं।

सामने दिख रहा तस्वीर अ अम प्रशासन हम्म की पस प्रशासन कार्यलाय की है जिसमें --

सामने दिख रहा तस्वीर हमारा आज सुबह सूर्योदय के समय की है।

उम्म पुतिन के प्रतिमा का अम्म का रंग हुआ उजला स्टोन पत्थर से कारीगरी की गयी --

सामने दिख रहा चित्र एक होटल की है रेस्टोरेंट की है जो की जिस रेस्टोरेंट का नाम है किराला होटल जबकि जो की यहाँ पे वेज और नॉन-वेज --

तो ये मजूद है। वेग कहे तो वेजीटेरियन एंड नॉन-वेज करे तो नॉन-वेजीटेरियन । वेजीटेरियन मीन्स --

बता रहे है अपने-अपने डिस अपने बिमारिओ को स नाम बता रहे है ये लोग और एक डॉक्टर है जो की-

यहाँ अपना साफ़ सुथरा भी रखे हुए है। थोड़ा पतझड़ का मौसम है थोड़े पत्ते-उत्ते है इधर-उधर गिरे हुए।

काफी बस की भी हम्म बस भी बोहोत बड़ी है बड़ी बस है। अ यहाँ पे इसमें जनसँख्या भी भा काफी लोग बैठ सकते है एक साथ।

रोड है पक्की रो सड़के हैं गाड़ियाँ भी चल रही है यहाँ पे।

छे-सात लेबर मिस्त्री मिल जुल कर आपस में काम कर रहे है ढल ढलाई करने का काम कर रहे है घर का दृशय बोहोत अच्छा है क्युकी घर के--

सामने दिख रहा तस्वीर में एक ये लड़का है जो किसी घूमने लायक स्थल जगह पे आये हुए है।

यहाँ से घी उ अं दूध से घी उ निकलने का भी काम किया जा जाता है दूध के साथ-साथ घी उ भी यहाँ सेल किये जाते हैं।